बढ़िया यहाँ घर बा। घर बहुत खूबसूरत बा। बहुत सुंदर लागता। एमे जंगला बाटे। एमे केवाड़ी बाटे। एमे चर चक्का बाटे। चर चक्का और करिया बाटे औरी उज्जर बाटे औरी पियर बाटे। बहुत बढ़िया रोड बाटे। घर बाटे। घर पेंट भइल बाटे।